इस तस्वीर में व्हिस्पर जीरो परसेंट लीक्स अप टू लिखा हुआ दिख रही है।

इस तस्वीर मे कुछ महिला भी बैठे हुए और खड़े हुए दिख रहा है।

इस तस्वीर में उस इंसान ने अपने सर पे बोरा लिया हुआ है।

इस तस्वीर में सफेद वॉल दिख रहा है।

इस तस्वीर में स्लाइड का रेड और ग्रीन कलर का दिख रहा है।

इस तस्वीर में पीला कलर का बड़ा दो खुटा लगाया दिख रहा है।

इस तस्वीर में पांच खिड़कियां दिख रही है इस तस्वीर में कुछ लोग खड़े हुए हुए दिख रहे हैं।

सारे फल दिख रहा है जिसके सामने एक सफेद कुर्ता पहन के इंसान खड़ा हुआ है।

इस तस्वीर में एक महिला ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है।

इस तस्वीर में लाल और सफेद सोफा सेट दिख रहे हैं।

और एक महिला ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है।

इस तस्वीर में कुछ बच्चे नदी में नहा रहे हैं।

इस तस्वीर में अमूल ताजा की पैकेट दिख रही है।

इस तस्वीर में लाल कलर का टेबल दिख रहा है।

इस तस्वीर में आइसक्रीम फ्रिज में रॉलिक लिखा हुआ दिख रहे है।

इस तस्वीर में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।